यह एक भवन जैसा लग रहा है जिसमे की एक रास्ता है और एक ऑटो लगा हुआ है जिसमें हल्का सा ब्लू कलर और हर --

यह एक किताबों की दूकान है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है मोबाइल पर बात कर रहा है इसके फोन एप्पल का है और इसमें बहुत सारे किताब कॉपीयां दिख रही है।

यह एक नदी है जिसके चारों ओर पेड़-पौधे लगे हुए हैं और ऊपर नीले-नीले आसमान है और एक पेड़ है जो बहुत ही बड़ा है ।

यह मिट्टी से लद गया है जो दिखने में अच्छा लग रहा है यह भवन बहुत ही प्यारा है मंदिर के आकृति का।

यह एक धान का खेत है और जिसके चारों तरफ एक गाँव बन गाँव है और यहाँ खेत के पास एक झोंपड़ी बनी हुई है ।

यह एक पुस्तक की दुकान है जहाँ बहुत सारे आदमी पुस्तक खरीद रहे हैं और कुछ आदमी रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए पुस्तक खरीद रहे हैं बहुत सारी पुस्तके रंग बिरंगी जो नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे।

बांस गाड़े हुए है और एक आदमी पानी से हाथ में बाल्टी लिए हुए बाहर निकल रहे हैं उसने जाल लगाया हुआ है जिसमें मछलियां फसेंगी।